डॉक्टर और मरीज़ खड़े हैं।

ये एक कार केयर की शॉप हैं।

और एक आदमी झोला पकड़ा हुआ हैं।

जिसमें बहुत सारा पानी भरा हैं।

जिनके पास कुछ गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं।

ये एक बड़ी सी किराने की दुकान हैं।

और आसपास बहुत पेड़ लगे हैं।

ये एक बड़ा सा रोड है ।

जहाँ सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया बनी हैं।

और दुकानें भी छोटी-छोटी लगी हैं।

घर के पास में दुकानें दी हुई हैं।

और आसपास बड़ी-बड़ी बिल्डिंगे --

ये एक मस्जिद बनी है जहाँ पर कुछ खिड़कियाँ --

ऊपर हरी कलर की लाइटें लगी हुई है।

इस पिक्चर में एक पार्क बना हुआ हैं।

कुछ मिट्टी भी पड़ी हैं।

ये एक बड़ा सा काउंटर है।

जिसमें ऊपर बिल्डिंग बनी हैं।